ये जगह एक बहुत ही सुंदर जगह है।

जहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक है तथा उसी के आगे एक गाड़ी लगी हुई है।

जे एक फूल की दुकान है जहाँ बहोत लंबे-लंबे फूल --

हमें एक बहुत बड़ी झील दिखाई दे रही है।

तथा दो मंजिले में यहाँ घर बनाया गया है।

और यह जो अलमारी है वह बहुत ही सुंदरता से कलर कर रखी है।

हमें बहुत सारे गुलदस्ते दिख रहे हैं।

जिसने की किसी गाँव की दूर से फोटो खींची गई है तथा उसको पारदाशित किया गया है।

जहां एक समुद्र है विशाल समुद्र।

जो कि घर बनाने की --

एक हरे कलर का मैदान है जिसमें --

दो छोटे से पेड़ लगे हुए हैं।

कंक्रीट का रास्ता बना हुआ है।

तथा दूसरी साइड पूरा समतल है।

मंदिर को प्रस्थान करने जा रहे हैं।